और सफाई लाइट का व्यवस्था बहुत अच्छी है।

यार ये बिल्डिंग तो बहुत ही पुरानी लगती है।

ये तो स्टेट बैंक का एटीएम है।

पेट्रोल पंप और सी.सी.टी.वी. कैमरे का भी --

यहां हर तरफ मछलियां ही मछलियां बिक रही हैं।

यहाँ की सड़के बननी चाहिए। पूरी सड़कें मिट्टी ही मिट्टी है।

इस कॉफ़ी के झाग देखो।

घंटा भर बोलते हैं देखो घंटे चिपक रहे हैं।

यहां पर पानी सेम हल्का आ रहा है।

यहाँ पर तो रेडीमेड भी कपड़े मिलते हैं।

यह भाई तो प्लम्बर लग रहे हैं।

दीवार पर इन्होंने अपनी रस्सी बांधकर लटके हुए हैं।

यहां पर तो भागेंगे खेल लेंगे तो --

और पूरे घर को लाइटों से चमका दिया और डी.जे. पर भी लाइट --

और लेदर की बॉल भी है और टेनिस की बॉल भी है भाई।

और यहाँ डैम के आगे देखो कैसे पत्थरों पर खड़ा होके --